जिसमें ए_टी_एम भारतीय डाक इंडियन पोस्ट लिखा हुआ है।

ये देवघर के बाबा मंदिर--

जिसमें दो तीन तीन आदमी खड़े हैं और एक आदमी काम करते हुए नजर आ रहे हैं।

इसमें लोग खरीदते भी दिख रहे हैं।

उसके बगल में उसके पीछे में सादे कलर के रंग से रंगे हुए--

ये चप्पल रखा हुआ है लोग जूते चप्पल की खरीदारी करने के लिए यहां पर आते हैं।

यहां पे रोड पे चलते हुए एक आदमी दिखाई दे रहा है।

टेंपू लगा हुआ उसके बगल में--

बगीचा जैसे उसमें बहोत सारे अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यहां पे हमे एक बड़ा सा स्टेज दिखाई दे रहा है जिसमें डांस करती हुई एक लड़ लड़की नजर आ रही है।

अप आपनी अपनी जगह पे।

यहां पे बहुत सा सारा मंदिर नजर आ रहा है।

जिसमे बहौत सारे पानी की बोतल रखे हुए है।

उसके पीछे बहोत अच्छे से राउंड में घड़ी बना हुआ है।

इसमें एक बड़ा सा बॉक्स टाइप में टेबल है।

इसके उप नीचे में कुर्सी लगा हुआ है।